इस फोटो में मुझे दिख रहा है कि सारा डिब्बे में चॉकलेट है बहुत सारा कुरकुरे है।

इस स्टेज पर बहुत सारे कुर्सियाँ लगा हुआ है और --

फोटो मे हमे दिख रहा है।

जैसे की कार गाड़ी है ।

इस फोटो मे हमे दिख रहा है।

और एक बच्चे के हाथ मे उल्टा घड़ी है।

एक बस्टर लगा हुआ है जिस में लिखा हुआ है।

लगी हुई है जिसमें की--

इस फोटो मे हमे दिखाई दे रहा है--

ना चटाई बिछा के बैठे हुए है।